यह एक गैरेज है जिसमें दो वर्कर्स एक कर को रिपेयर कर रहे हैं।

सैलून की साफ सफाई बहुत ही अच्छी है।

पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारी खिड़कियां हैं एक आदमी बैठा हुआ है।

रूम बहोत ही साफ सफाई से है।

एक स्कूल बस है और दो स्कार्पियो है और एक कार है।

उसके बाहर दो बाइक्स लगी हुई है यह बिल्डिंग स्कूल है।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

यह एक दुकान है जिसमें चिप्स कुरकुरे अंडे और सेनेटरी पैड दिखाई दे रहे हैं।

इस रेस्टोरेंट की फर्श भी बहुत अच्छी है।

इसके बाहर बहोत हरी हरी घास लगी हुई है जो की इस बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ा रही है।

इस कार की नंबर प्लेट में नंबर नहीं है।

यह एक होटल है इस होटल का नाम साईं राम भोजनालय है।

इसमें दो तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक औरत दिखाई दे रही है।

कुछ इंसान बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं।

ए_टी_एम का गेट खुला हुआ है।

कुर्सियां है एक कुर्सियां पे एक लड़का बैठा है जो फोन पे बात कर रहा है जिसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा--

खिड़कियां में शीशे लगे हुए हैं बिल्डिंग का डिजाइन गोल्डन कलर का है।

बिल्डिंग के व्हाइट वाले पार्ट में सिर्फ चार ही खिड़कियां दिख रही है बाकी खिड़कियां ब्राउन वाले पार्ट और सिल्वर वाले पार्ट में हैं।

यह एक मुस्लिम धर्म का स्थान है जिसमें से बहुत सारे मुस्लिम आदमी बैठे हुए हैं।